और एक अटैची रखी हुई है सामने एक झोला रखा हुआ है जो गुलाबी रंग का है।

कुछ पानी पीते हुए हिरन दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

और कुछ लड़के कुर्सियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके पास भी एक काले रंग का बैग है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा है जिस पर एक तिरपाल बिछा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा एच_पी का पेट्रोल पंप दिख रहा है।

वो रोड पर सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है पीछे की तरफ बड़ी बड़ी मट्टी की चट्टानें दिख रही हैं।

सामने कुछ एस_बी_आई कार्ड का एक फोटो लगा हुआ है।

जो कि जल रहा है नीचे कुछ लाइटें भी जल रही हैं और कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक वाश बेसिन की दुकान दिखाई गई है।

सामने कुछ डेस्क बनी हुई हैं जिनके अलग अलग पार्ट हो रखे हैं।

और कुछ मेज दिखाई दे रही है मेंज पर कुछ तख्ते भी रखे हुए हैं।

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एस_एस लिखा हुआ है और नीचे कुछ दरवाजों के चित्र बने हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक परचून की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें आगे की तरफ बहुत सारी बेंच लगी हुई है जिनके अंदर छोटी छोटी अलमारियां बनी हुई है।

पीछे की तरफ एक दुकान दिखाई दे रही है जिस पर सागरिका लिखा हुआ है और ऊपर इफको लिखा हुआ है।

और एक सामने खड़ा हुआ मजदूर दिखाई दे रहा है पीछे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर अलमारी में रखी हुई कुछ मूर्ति दिखाई दे रही है जिनके ऊपर कुछ मालाएं लगी हुई है।

और दो खंबे खड़े हुए हैं जिनके ऊपर से कुछ तार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमे लोहे की सरिया के मोटे-मोटे बंडल बने हुए है दिख रहे हुए हैं।

कछुए की ऊपर वाली स्कीन पर कुछ निशान बने हुए हैं।

इनके मुंह छुपाए गए हैं मूर्ति के हाथ में एक बंसी दिखाई दे रही है।

और ऊपर की तरफ एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पर जिम बॉय बने हुए हैं।

ऊपर की तरफ कुछ मशीन लगी हुई है जो की धागे बनाने वाली मशीन है।

इस पर कुछ सामान रखा हुआ है जैसे कि कैप रखा हुआ है एक बैग रखा हुआ है।